थोड़े से दूर में बहुत सारा पर्दा भी दिख रहा है।

गेट के बीचों बीच में एक लाइट भी लगा हुआ है।

स्टेज में बहुत बड़ा सा पोस्टर भी लगाया हुआ है पोस्टर के कोने कोने में बहुत सारा बैलून भी दिख रहा है।

यह तस्वीर में मुझे एक पर्पल कलर का गेट दिख रहा है।

घर के सामने बहुत सारा पेड़ भी निकला हुआ है।

अलमारी के सबसे ऊपर में कुछ हॉर्लिक्स भी रखा हुआ है।

गेट के अंदर एक घर भी दिख रहा है।

एक सफेद कलर का प्लास्टिक भी दिख रहा है।

इसके पीछे एक इंसान भी नजर आ रहा है।

कोने में बहुत सारे जूते नजर आ रहे हैं जमीन पर बहुत सारे बॉक्सेस भी रखा हुआ है।